एक व्यक्ति मिरर में अपनी फोटोस ले रहा है रेड कलर का एक पोस्टर लगा हुआ है और ए--

और काफी अच्छी जिम है जिसमे रनिंग के साथ साथ और कई सारी मशीनें रखी हुई हैं।

लगे हुए है बडे बडे और निचे घास वाले भी पेड लगे हुए हे ।

जैसा कि मैं देख रहा हूं।

वनों के पे एक को एक पेड़ बेड़ा है।

साइड में गते रखे हुए हैं जिस पे स्टीकर लगे हुए हैं येलो कलर के लाइट्स ऑफ है।

जैसा कि हम देख रहे हैं हरे रंग की मैटे बिछी हुई है।

इसमे बल्ली पटरा लगा हुआ हे और जिसकी दिवाले आर_सी_सी कि बनी हुई हे --

लोग पैसे निकालने के लिए खड़े हुए हैं शटर खुला हुआ है लाइटिंग ऑन है एयरकंडीशनर ऑन है ।

इसमें बुक्स सभी सीरियल वाइज लगी हुई हैं।

जिस प्रकार की बुक हमें चाहिए उस प्रकार की बुक यहां पर मिल रही है।